इस तस्वीर में हमे एक आदमी के पाव को दिखाया गया है इसके पाव पर कई सारे बैंडेज लगे हुए है।

दृश्य एक छत का है जहां हमें तीन औरते योगा करते हुए दिखाई दे रही है उन्होंने नीचे पर मेट भी बिछाया हुआ है देखने में यह दृश्य काफी अच्छा लग रहा है।

ये इस तस्वीर में हमे एक बैंक दिखाई दे रहा है बैंक के साथ-साथ यहाँ पर एक ए.टी.एम. भी बनाया गया है।

मंच पर माइक में कुछ बोलती हुई हमे नजर आ रही है दिखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।

यह सारे लोग बैठ कर परदे पर कुछ देख रहे है देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।

ये एक मैदान का है जहा हमे कुछ लड़के फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे है बढ़ा ही रोमांचिक इनका यह खेल लग रहा है।

अभी हमे यह गेंद हवा में उड़ता हुआ नज़र आ रहा है आस पास हमे पेड़ भी दिखाई दे रही है देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।